बहुत सारे बल्ब लगे हुए दिखाई दे रहें हैं।

चेयर लगी हुई है उस पर एक महिला बैठी दिखाई दे रही ऊपर आसमान नीला दिखाई दे रहा है।

बोहोत बड़ा फर्स बिछा हुआ है जिसपर बहोत सारी लड़कियाँ योगा करती दिखाई दे रही है।

बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो बाहर बहुत सारे लाइटों से सजी हुई दिखाई दे रही है और नीचे रोड पर कुछ बाइकें खड़ी दिखाई दे रही हैं एक स्टोर --

नीचे भी खिड़कियाँ दिखाई दे रही है एक गेट दिखाई दे रहा है और नीचे मैदान में एक कचरे की गाड़ी खड़ी दिखाई दे रही है एक कार भी खड़ी दिखाई दे --

तालाब दिखाई दे रहा है तालाब में दो लोग बोट चलाते दिखाई दे रहें हैं।